घोड़े की मूर्तियां बनी हुई हैं और फूल के हार लगे हुए हैं।

चित्र में कुछ एक लड़की पौधा लगा रही है जिस ने हाथ में पौधा पकड़ा हुआ है दूसरी तरफ भी दूसरे बच्चे खेल रहें --

चीजों का इस्तमाल कर-कर धुन बना रहे हैं।

पेट्रोल पम्प की है।

चित्र-- एक कक्षा की है जहाँ पे खाली बेंचे रखी हुई है सामने की ओर एक सफेद रंग का बोर्ड है दीवार पर ए_सी लगी हुई है और खिड़की भी बनी हुई है।

ये एक नाई की दुकान दिख रही है।

चित्र में एक ए.टी.एम. मशीन नजर आ रही है जिसमें एक स्क्रिन है और बहुत से बटन्स है इसका रंग नीला है और अंदर-अंदर कार्ड डालने के लिए रखा हुआ है।

चित्र एक ए.टी.एम. मशीन की है और अंदर एक आदमी ठहरा हुआ है।

की ओर कई वरमालाए लगी हुई है और बाहर एक गाड़ी है।

ये चित्र मे रिक्शा रखे हुए है और ये रिक्शे का रंग लाल और नीला है सामने की ओर इसके ग्लास पे प्लास्टिक लगी हुई है और बाजू भी कुछ और सामान रखा हुआ है।

एक रिक्शा नजर आ रहा है और इस रिक्शे का रंग नीला और काला है ऊपर की ओर लाइट्स लगी हुई है और सीटस है बाजु से कई लड़किया गुजर रही है।

ये चित्र एक रिक्शा की है जिसका रंग लाल है इसमे लाइट्स लगी हुई है और सीटस है रिक्शा प्लास्टिक की परनियों से कवर है।